दीवाल पे कुछ सीनरी सी लगी हुई दिखाई दे रही है और हमें रंग बिरंगे बैलून भी लगे हुए दिख रहे हैं बाहर हमें एक बाइक लगी हुई दिखाई दे--

पंखे दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पे बहुत सारा सामान रखा हुआ दिख रहा--

रेड रंग का पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है जिसपे लिखा के इंटरनेशनल स्कूल हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स --

जहां पे एक व्यक्ति दिख रहा है जोकि दुकानदार लग रहा है उसके अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है वो फोन को चला रहा है।

यहां पे हमे एक सड़क दिख रही है जिसपे बहोत सारे लोग हैं वो चल रहे हैं।

हमें यहां पे कुछ टेडी वगैरा दिख रहे हैं।

हमें यहां पे एक कटोरी में चटनी पड़ी हुई दिखाई दे रही है जोकि हरे रंग की है हमें यहां पे टेबल पे दो गिलास भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पे एक फैन दिखाई दे रहा है जो कि काले रंग का है।

इस फोटो में हमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहां पे एक दुकान दिखाई दे रही है जोकि केक की दुकान है यहां पे बहुत सारा केक का सामान रखा हुआ है बहुत सारी केक रखी हु--

हमें यहां पे बर्थडे का समान दिख रहा है कुछ लाइटें जगी हुईं हैं हमें यहां पे बर्थडे कैप्स दिखाई दे रहीं हैं।